कई सारे ईंट के ढेर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।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

ब्लैक कलर की कई सारी चीजें बनी हुई दिखाई दे रही है --

कई सारे पत्थर डले हुए दिखाई दे रहे हैं पत्थर के सामने पेड़ पौधे लगे दिखाई दे रहे--

मुझे इस फोटो में कई सारे खाने की वैरायटी ऊपर की ओर रखी हुई दिखाई दे रही नीचे का वाइट कलर की ।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

मुझे इस फोटो में दो से तीन कारे खड़ी हुई दिखाई दे रही जो ब्लैक और वाइट का कार है।

नीला आसमान दिखाई दे रहा है सामने ओर देखे खंभा लगे हुए जिसमें वायरिंग गई हुई दिखा--।

आसमान की और दिखाई दे रहा है दिन का समय है बेंच को साइड में रखे हुए दिखाई दे रहा है दीवारों पर व्हाइट कलर का--

साफ मैदान है साथ मे भी दिखाई दे रही है दूर दूर तक पेड़ पौधे लगे --

कूलर रखे हुए दिखाई दे रहे है।

अच्छी लम्बी हरी भरी दिखाई दे रही ऊपर की दीवाल

मुझे फनी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे घास आस दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में एक दवाई मेडिकल दिखाई दे रही है जिसमें सी_ए_ए_एम_वाई_ए --

एक गोल चक्र बना है जिसके ऊपर एक लगा हुआ--

मुझे इस फोटो में एक घर बना हुआ दिखाइ दे जो साइड में घर बना हुआ है एक इंसान हरी-हरी घासे हुए अंदर कि ओर दिखाई दे रही --

सफेद कलर की रखी हुई दिखाई दे रही है ।

मुझे मुझे इस फोटो मे सामने तरफ एक स्कूल दिखाई दे रहा है।